नहीं आ रहा है लेकिन छोटा छोटा मछली देखने को मिल रहा है।

सब्जी बॉय है सब्जी में बहोत सारे--

मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है हल्का फुल्का पेड़ भी दि--

बड्डे पार्टी में उछल रहा--

बारिश है तो जिंदगी है नहीं तो कुछ न --

ये तो कुछ स्तंभ टाइप का दिख रहा है।

घूमने को बहुत अच्छा लगता है।

किसी के घर के गेट के सामने--

दालभात खा खा के हम लोग परेशान हो चुके हैं।

पता नहीं ये सफेद शर्ट वाला आदमी--

लो भाई साब घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए हैं।

अपने लिए पहने के लिए टाटा वालो ने कौन सी अच्छी अच्छी चीजें रखी है।

बच्चे लोगों को भी शामिल कर दिया।

और हम लोग भी बहोत सारा शरारत करते थे वो दिन हमको आज--

फुलीग देख के दिल को सकून आता है।

ये एक ठो कॉलेज है जो कि सस्ता वाला भीख मंगा कॉलेज --